और उसमें एक पानी का फव्वारा चल रहा है।

यहां एक आदमी बैठा है ऊपर एक पंखा लगा है।

ऊपर कुछ लाइट लगी है और पंखे भी है।

और अंबेडकर की मूर्ति बनी है। एक मूर्ति और है।

इस पे लिखा है व्यापार भवन।

और इनमें शीशे लगे हैं।

यहाँ बहुत सारी फूलों की माला टंगी है।

ऊपर एक बोर्ड लगा है जिसपे लिखा है सरस्वती विहार।

नीचे छोटे छोटे पेड़ है।

हरी हरी घास लगी है और कुछ हरे भरे पेड़ भी लगा--

बाहर एक लोहे के जाल में कुछ मुर्गे हैं और एक बाइक खड़ी है।

इसमें बहोत सारे बच्चों कोई खिलौने और लगे हैं।